एक कार भी खड़ा है बाहर में।

यहाँ पर तीन कार भी खड़ा है और यहाँ पर एक साइकिल भी खड़ा है।

यहां पर एक दरवाजा भी लगा हुआ है।

यहां पर पेड़ भी लगा हुआ है।

यहा पर एक टोकरी भी रखा हुआ है।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

यहां पर बहुत सारे आदमी ने कॉपी रखा हुआ--

यहां पर बालू भी है और बहुत सारा पेड़ भी लगाया गया है।

यहां पर पेपर भी दिखाई दे रहा है।

वहां पर बहुत सारा आदमी है और बहुत सारा लोहे का सामान भी रखा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारा पेड़ भी लगाया गया है।

यह एक दुकान है और यहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यहां पर एक कुत्ता भी है।

यह एक दुकान है और यहां पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

यहां पर एक हाथी का चित्र बना हुआ है।

यहां पर एक घड़ी भी लगा हुआ है।

यहां पर शीशे का गेट भी लगा हुआ है।

बहुत सारा कपड़ा को बैग में पैक भी कर दिया गया है।

नीचे में टाइल्स भी लगाया गया है।

पोस्टर में बहुत सारा आदमी और दिखाई दे रहा है।

और यहां पर बहुत सारा कुर्सियां भी रखा हुआ हैं।

पर बहुत सारा आदमी कुर्सी पर बैठा भी हुआ है।

यहां पर कुछ लोहे के खंभे भी लगे हुए हैं।

बोर्ड से साइड में एक दावा भी है और यहां पर एक पलंग भी है।

दरवाजा के साइड में एक डस्टबिन भी रखा हुआ है।

यहाँ पर पंखा भी लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारा आदमी है और यहां पर पानी भी है।

यहां पर बहुत सारा चट्टान भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक मंदिर भी है।

और बहुत सारा मोटरसाईकिल खडा हुआ है और यहा पर एक हैलमेट भी रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारा लाइट भी लगा हुआ है।

यह एक मंदिर है और यहां पर तीन चार आदमी बैठा हुआ है।

यह एक मंदिर है और यहां पर बहुत सारा झंडा भी लगाया गया है।

सीढ़ी के ऊपर में सारा लोहे का रेलिंग भी लगाया गया है।